पूजा और प्रार्थना करने के लिए आते हैं और पूजा और प्रार्थना करते चले जाते हैं।

और इसके नीचे में नीचे में बहुत सारे दुकान लगे हुए है जो --

यह एक बहुत बड़ा का गैरेज दुकान है जहाँ पे गाड़ियों को बनाया जाता हैं ।

जो दिखने में यह शानदार तरीके से दिख रहा है और बहुत सुंदर भी यहाँ पस का नज़ारा है।